और यहाँ बहुत सारे आदमी खड़े हुए है बैठे हुए है और यह बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ लाइट भी है कुछ काच और यह बहुत--

मुराई सब चीज है भंटा मेला देखने में सुन्दर है।